एक अलमारी दिखाई दे रही है। अलमारी में कुछ खाके बने हुए --

रास्तों के साइड में कुछ छोटे और कुछ बड़े झाड़ लगाए लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।